जिनमे फूल भी आ रहे है यहाँ पर पेड़ भी लगे है और बोहोत ही सुंदर कार्टून्स भी बने है।

यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा है यहाँ की दीवारों पर बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है।